और दूसरे भाग में अ-दो परदे हैं और दरवाजा दरवाजा दिखाई दे रहा है और डाइनिंगटेबल और कुर्सी रखी हुई है धन्यवाद।

और बाजु मैं खुली जगह दिखाई दे रही है धन्यवाद।

और पहाड़ी के दोनों तरफ पहाड़ी हैं और बीच मैं नदी बहती हुई नजर आ रही है धन्यवाद।

इस चित्र मैं एक कमरा दिखाई दे रहा है कमरे के अंदर एक लकड़ी की अलमारी है इसमें कुछ सामन है और एक घडी दिखाई दे रही है दीवाल पर।

और टेबल कुर्सी दिखाई दे रही है और टेबल के ऊपर पानी का मग है धन्यवाद ।

इस चित्र मे काफी बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं पहाड़ी एरिया है और व-कुछ घर जैसे दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक होटल दिखाई दे रही हैं होटल के ये छत पर अ-अ कुछ पंखा दिखाई दे रहा हैं।

पहाड़ दिखाई दे रहै हैं और आसमान दिखाई दे रहा हैं।

और दो अलमारी है और अलमारी के अंदर अलमारी के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है कुछ फर्नीचर है धन्यवाद।

मे आसमान दिखाई दे रहा है पहाड़ी दिखाई दे रही है और दोनों तरफ पहाड़ी है और पहाड़ देके बीचों-बीच आ पानी बहता हुआ नजर आ रहा है।

चित्र में सफेद आसमान दिखाई दे रहा हैपेड़ दिखाई दे रहे हैं पहाड़ी एरिया दिखाई दे रहा हैऔर पहाड़ी का बाजु में एक घर बिल्डिंग दिखाई दे रही है।